हरे-भरे पेड़-पौधे लगे। ब्लैक कलर पंखे वन्खे--

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर--

व्हाइट कलर की लाइटिंग लगाई गई है ब्लैक एंड व्हाइट कलर --

व्हाइट कलर की लाइटिंग लगाई गई है आजू-बाजू दिखाई दे रही है अंदर की ओर रखी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओ --

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक मच्छी बाजार बनी हुई दिखाई दे जिस मच्छी अच्छेअच्छे--

रखी हुई दिखाई दे रही उम् कई सारे इंसान बैठे हुए दिखाई देरे कई सारे इंसान --

मुझे इस फोटो में सामने जो की सारे हरे भरे पेड़ पौधा सारी घासफुस लगी दिखाई दे रहीं हैं सामने की ओर--

दिन का समय दिखाई दे रहा कहीं पत्थर कहीं खेत वेत बने दिखाई दे--

दो दो मंजिल की बिल्डिंग यहां बनी हुई दिखाई दे रही है

बनाए गए है सामने के उस के ऊपर के सारे--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे--

मुझे इस फोटो में सामने कोई एक नाई की दुकान खुली हुई दिखाई दे जिसमें नीले कलर की एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही नाइट के--

पत्तों के बीच में एक गुफा बनी हुई दिखाई दे है।

इस फोटो में सामने काफी हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे नीचे हरी भरी घास फूस लगाई है सामने को।

एक लोहे का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा आजू बाजू

व्हाइट कलर के देवाल वाल पु हुई दिखाई दे रही सामने की ओर एक--

तीन टेंपू लगे है। गई सामने देख कांच वाच के गेटे लगाई दिखाई देने नीचे जो--

ग्रीन थैले दिखाई दे रही है दिन का समय दिखाई दे आजू-बाजू कई सारे --

दिन का समय दिखाया गया आजू बाजू हरे भरे पेड़ पौधे लगे पहाड़ वहाड़ बने दिखाई दे रहे--

टला हुआ दिखाई दे रहा है सामने की ओर दिखाई दे रहा--

मुझे इस फोटो में सामने की और दीवालें में फोटो दिखाई दे रही सामने की ओर एक वाइट कलर की ए_सी लगी दिखाई दे रही नीचे की ओर--

इधर कुर्सियां बेंच वेंच रखे दिखाई दे रहे पोती हुई दिखाई दे रहे--

पानी आनी बहता हुआ दिखाई दे रहा चंचल पानी बहता दिखाई दे रहा दिन का समय दिखाई दे रहा आजु-बाजु --

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साम सामने की ओर।